पिक्चर में अ अ कुछ लोग खड़े हुए है जो व्हाइट कलर के कपड़े पहनें हुए है पीछे जो पैंट है पैंट पुता हुआ है वे भी व्हाइट कलर का है।

मेहंदी कलर के पर्दे लगे हुए है उसी के जस्ट पास में एक घड़ी लगी हुई है । और एक वि--

पिक्चर मे कुछ ऊपर आसमान है जो वाईट ओैर स्लेटी कलर मे है ओैर नीचे कुछ पूजा करने वाली औरते बैठी हुई है।

पिक्चर में कुछ औरते दिख रही हैं और पीछे अ-अ पानी भरा हुआ है और वहां पर हरी घांस दिख रही है।

आ जोम कत्थई कलर मे है और एक लड़का है जो अ अ मेहंदी कलर

और नीचे एक कारपेट है जो पिंक कलर का है और कुछ दो लोग बैठे हुए है नीचे जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए है।

पिक्चर रोड दिख रहा है और पास में कुछ घर बिल्डिंगे दिख रही है | वो मंदिर---